वहाँ पर बैनर लगाके दिखाई दे रहा है उपर जाने केलिय सीडियाँ दिखाई दे रही है वहाँ पर गाडियाँ दिखाई दे रही है।

सामने गाड़िया रखी हुई दिखाई दे रही है उधर साइड मे एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा ह.

वहाँपे एक ए.टी.एम दिखाई दे रहा है बिल्डिंग दिखाई दे रही है इलेक्ट्रिक पोल भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है अ --

इस चित्र मैं पथर से बनी मंदिर दिखाई दे रही है। पथर से बने दिवार दिखाई दे रहे है। वहा--

यह चित्र एक तालाब का है तालाब मे पानी दिखाई दे रहा है तालाब के किनारे अ-हरी घास दिखाई दे रही है।